कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें महिलाओं का समान है महिलाओं के अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पड़े हुए हैं बत्तियां जगमगा रही हैं।

नजारा देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छी तस्वीर खींची गई है पेड़ पौधे हैं एक बहुत ही बड़ा घर है।

पुल के नीचे से एक रेल व रेलगाड़ी गुजर रही है रेलगाड़ी बहुत ही लंबी है।

एक पेड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बत्तियां जगमगा रही है एक बीकांणा चौपाटी भी है बिजली की भी अच्छी व्यवस्था है।

पेट्रोल पंप की तस्वीर खींची गई है पेट्रोल पंप भी बहुत ही बड़ा है इसके ऊपर एस_बी नाम लिखा हुआ है।

एक फुटकर व्यापार की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें सफेद कपड़े पहने हुए कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं पंखा भी चल रहा है।

बहुत ही अच्छी प्रकार से तस्वीर शूटिंग की गई है पांच व्यक्ति गप्पे लड़ा रही है अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए है।

यहां पर मुझे सड़क भी दिखाई दे रही है पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं एक नदी या फिर झील दिखाई दे रही है इसके तट पर पेड़ पौधे हैं।

पौधे है अंधेरा छाया हुआ है मोटरसाइकिलें है।

बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छी प्रकार से खींची गई तस्वीर है देखने में आकर्षक तस्वीर है।

यहां पर मुझे एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद है यहां पर बिजली कि अच्छी व्यवस्था है।

इस पर बहुत सारे वाहन चल रहे हैं किसी की कार है मोटरसाइकिल हैं।

बहुत ही अच्छी फुटकर व्यापार की दुकान है इसके अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है।